उम गेट लगाए हुए है और सभी आदमी यहाँ आ करके पूजा-पाठ करते है पूजा-पाठ करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है गाछ भी यहाँ गाछ भी है हरी-हरी गा उम गाछ लगी हुई वृक्ष लगी हुई है सब तरह की--

और सभी प्रकार की आदमी सभी आदमी वहाँ जा कर के गौतम बुद्ध की पूजा करते है और छमा हम्म करते है छमा मांगते है और बुद्धि की ज्ञान भी मांग ते है।